एक बड़ा कमरा बना हुआ है आस पास बहुत सारी जालिया लगी हुई है कुछ लोग खड़े हुए हैं उन जालियों में से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है लाइटे जल रही है।